और हरियाली भी प्रतीत हो रही है आस पास |

नदी के बीच में से एक पूल बना हुआ है आसमान भी साफ है और हरियाली भी भरपूर दिख रही है।

पुल के ऊपर कुछ सयन कक्ष जैसे हम देख सकते हैं अवश्य ही वो बांध के लिए है जो बांध को नियंत्रित करते हैं |

एक मंदिर के भीतर से बाहर का दृश्य दिख रहा है। आसमान बड़ा ही सुहाना लग रहा है। मौसम बोहोत ही खूबसूरत है।

स् पर लोग कसरत करते हैं। अभी यहाँ कोई भी कसरत नहीं कर रहा हैं। शीशे में भी किसी का पर्र् प्रदर्शन नहीं हो रहा है।

किसी घर में कोई मनुष्य कसरत कर रहा है जो कि योगा से संबंधित है और यह किसी आसन को --